और ये एक सड़क जा रही है।

इसमें लोग रहते हैं। किराये पर कमरे लेते हैं इसमें। काफी ऊँची बिल्डिंग है।

क्रिकेट प्लयेरो का प्रेक्टिस सेट है।

और ये जिनो पर यहां पर ग्रील लगी हुई है स्टील की --

हरे रंग का टैटू बना हुआ है काफी अच्छा लग रहा है देखने में --

ये चिज केक बनाती है बड़ाइनके पास बड़े-बड़े फ्रिज भी हैं।

यह एक रेस्टुरेंट है और इसमें --